कुछ आदमी सेलिंग कर रहे हैं। यहां पर तीन चेयर रखी हुई है। यहां पर एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है। एक आदमी ने--

दुकान वाला साड़ी के साथ फॉल भी बेचना चाह रहा है।

यह एक सैलून का फोटो है। सलून में--